यह एक रोड है। इधर से जाने का उधर से आने का। बोहोत सारा बाइक भी चला हुआ है। औरत भी बैठा हुआ है साइड में --

एक होटल है यहाँ पर रोड के साइड में लगा हुआ है बहोत सारा आदमी भी आता है यहाँ पर।

लगभग बाल्टी भी रखा हुआ है और ड्रम भी है साइड में ये एल्वेस्टर पर लगा हुआ है।

ये घर है घर के अंदर गेट भी लगा हुआ है ऊपर में भी लाइट भी लगा हुआ है गाछ भी बहोत अच्छा-अच्छा है हरा कलर का।

घर भी है उधर वो जाने के लिए डराने के लिए भी लगाया है। उधर घर भी है।

उम्म एकठो ए बूढ़ा है यहां पर चश्मा भी उनके हाथ में साइड में है।